ख बोहत बड़ा-सा ये है।

पार्क पर्क है और तेल मिल है बहुत सारी चीजे रखी हुई है और यहाँ पे सस्ते पड़ेगा समान--